मेन गेट के ऊपर ली गई है।

और इस फोटो के अंदर दिख रहे हेंगे --

और टेंट गुलाबी रंग का है। खंभे के सहारे गाड़ा गया है।

लाल और हरे रंग का कुर्सी भी लाल रंग की है।